दिखाई दे रहा है यहाँ जो बेड होते हैं उसकी बेडशीट एक नीचे रखी हुई है एक --

यहाँ एक सुदर सा डेकोरेशन दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है या तो शादी पार्टी का यह जैसे मेला --

मुझे यहाँ एक छोटा सा तालाब नजर आ रहा है जिस में पानी भरा हुआ है सुंदर-सा और यहाँ इसके पास एक पेड़ है जो की --

यहाँ एक खेत है जहाँ पर पेड़-पौधे लगे हुए हैं बड़े-बड़े और नीचे धान बुआई हैचल रही है।

और यहाँ एक खंबा भी दिखाई दे रहा है दूर बहुत दूर को और नीचे जो जमीन है। बस छोटे-छोटे पेड़-पोधे हैं बड़े बिलकुल भी नही है पेड़ पौधें --